यहाँ पर दुरी पर झाड़िया बनाई गई है और ये पुरानी इमारत जैसा पेंटिंग है यहाँ पे कोई इंसान की पैन्टिन्ग नइ यूज़ की गई है और ये जो पेंटिंग है तो किसी वाटर कलर को यूज़ की गई यहाँ पे एक तरफ छाँव जैसा ही हुआ है वो भी बताया गया है।

एक घर है और घर में बहुत सारे लोग है उनका घर येलो कलर की है और दीवार पर बहुत सारा तस्वीर बनी हुई है।